यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रखी दिखाई दे रही है और कुछ घर भी यहाँ पर दिखाई दे --

कुछ लोग जो है इस नदी के किनारे खड़े हुए है ब्लैक कलर की चट्टानों पर और यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।